उससे नीचे एक काले रंग की जाली वाला बहोत बड़ा सा गेट है।

शोरूम दिखाई दे रहा है हुंडई का जहां पे सामने तीन व्हाईट कलर की कार पड़ी हुई है।